भारतीय पेट्रोल पंप यहाँ बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है ट्रक है काफी लोग हैं पार्क है लाइट लगे हुए हैं।

लाइसेंस लेने पड़ते हैं पेट्रोल पंप के यहां पर को --